बीच में उसके मछलियाँ भी रखीं हैं सामने वाइट कलर की --

खम्बे भी हैं। लाइटें भी लगी हुई हैं और ऊपर जो बादल‌ भी हैं। काफी सारे तार भी निकले हुए हैं।

ये कोई रेस्टोरेंट वगैरह है जिससे एक बंदा बैठा हुआ है उसके साइड में गुब्बारे टाइप के लगे हुए हैं।

यह भारतीय स्टेट बैंक है शायद लोगो दिख रहा है इसमें तो एक आंटी और अंकल जी बैठे हुए हैं जिसमे --

आगे की फोटो खिचवाया है जिससे पीछे बैकग्राउंड भी है।